फोर जी डाटा यहाँ पे आईडिया सिम मिलता है देख सकतें हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को दुकान --

यहाँ पर लैपटॉप वगेरा कुछ-कुछ रखे हुए हैं देख सकते है ।

सब डुबलीकेट - डुबलीकेट गुलदस्ता लग रहा ये और ये प्लास्टिक का है देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे पार्क है देख सक --

लोग दिखाई दे रहा है वहाँ देख सकते है यहाँ पर --

टेंपू वगैरा ऑटो वैगरा --

क्या बात कर रहे हैं वो देखिए भईया भी बात कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल में बैठे हुआ है गलैमर में देख सकते हैं |

बस आया हुआ है देख सकते है काफी सुंदर लुक दिखाई दे रहा होगा --

और ये बहुत दूर से आदमी आता है घूमने के लिए --

गाड़ी रखी हुइ है | फोर व्हीलर देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को |

यहां खेलते है और यहाँ पे आनंद लेते है देख सकते है कितना मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा यहां घुसिएगा वहां निकलिये।

काफी जबरदस्त सिन दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और काफी मस्त सिन दिखाई दे रहा होगा --

और ये चॉकलेट फैक्टरी है और इसमे बहुत सारे चॉकलेट वगैरा बनते हैं देख सकते है यहां काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को --

और आगे यहाँ पे पानी उतना नहीं हैबहुत गहरा है और यहां से पानी खेतो मे --